जिसमे कुछ लोग खड़े है यहाँ पे बहोत सारी डेकोरेशन --

मुझे चेयर ब्लैक कलर की दिख रही है एक एम्प्लोयी रेड कलर की शर्ट में--

ये एक पेड़ पौधे कि वृक्ष वी पिक दिख रही है मुझे एक आदमी खड़ा है।

कुछ मिर्चिया दिख रही है कुछ आले रखे हुए दिख रही है एक टोकरी में--

जिसमे कुछ लड़किया स्कूल यूनिफार्म में खड़ी है कुछ स्कूटी लगे हुए है यहाँ पे--

बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है नीचे कही-कही घाँस भी लगी हुई है आदि रोड की पिक दिख रही है।